बैंक बंद है ए_टी_एम खुला है। दो बिल्डिंग की है।

रोड गई हुई है जिसमे रेलिंग लगी है लोहे की। कुछ लोहे के खंबे हैं जिसमे लाईट लगी हुई है।